यह एक दुकान है और इसमें कुछ गिटार टंगे हुए हैं।

और नीचे कुछ समान रखा हुआ है।

और उसके ऊपर थिन जगले भी लगे हैं।

और यहां पे कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

और उसमें से कुछ पानी नीचे गिर रहा है।

यह एक लकड़ी मेज है।

और उसके पास एक आदमी बैठा हुआ है।

यहां पे दु दुवाल पे कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।

और इसके पास में कुछ मकान से बने हुए हैं।

और नीचे कुछ हरी हरी घास भी लगी हैं।

और इसमें दो मशीन लग रही है।

और यहां पे कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं।

और उनपे कुछ आदमी बैठे हुए है।

जो दिखने में बहोत खूबसूरत लग रहा है।

और गेट के बराबर में एक मीटर भी लगा है।

और इसके पास में कुछ घास भी लगी हुई है।